पंडाल हे यहाँ बहुत सारा मूर्ति हे दुर्गा माँ का है शंकर भगवान करा है गणेश देवता का है बहुत सारा आदमी बइठिन है पूजा करत हे और आवत है आरती करत हे और खड़ा हें।

एमेर एक ठी गेट हे गेट का अंदर आदमी हे चलत हे प्रवेश निषेध आम --

कुर्सी भी लगीस हे आदमी मन खड़ा हे चलत हे फूल खिली से मस्ते --

ये एकथ दुकान है चिल्ड्रेंस --

ये डांस वाला स्टेज है कुर्सी लगी से आदमी बैठी है डांस करते हैं लाइट गलत है गुबारा में सजाई नमस्ते गुबारा मन फुलात है।

ये रहट है रहट में आदमी बैठीने झोलत है मस्त और ये रहट लत मुख चढ़ले एकदम डर लागेल आदमी मन बहुत घूमत थे देखते हैं।

आदमी बहुत दिखत है बाइक भी खड़ा है और कार खड़ा है ऊपर में रोड भी खड़ा --

एक तो ग्राउंड है यह बहुत अच्छा लगत है बाउंड्री है मस्ती और ग्राउंड में हरा भरा दिखत है बालू टाइप से दिखते --

और खिड़की भी दिशा थी --

तो फल का दुकान है यहां फल बेचत है।

बगल बगल में चट्टान कुछ दिया है और पेड़ दिया है पेड़ में पत्ता हरा भरा दिसत थी --

क्रॉकेट का छानिया है वहां लाइट भी लगी से --

गमला में भी रखाई से मस्त सजा के रखी है।

एकतो पेड़ है गड्ढा है और पानी भरी से अगल बगल झाड़ी भी है छोटे-छोटे पौधा भी है जड़ भी है पत्ता भी --